वहा थोड़ा अंधेरा है वह उस टेकड़ी मे जाने केया लिए प्रयास कर रहा है।

एक आदमी है वह अपनी तस्वीर खिच रहा है उसने मास्क भी लगाया हुआ है उसके सामने एक टेबल है टेबल पर एक कंपूटर है उसके बाजुमे माउस है।

उन सबके हाथों में ड्राइंग शीट है वह उसे पेंट कर रहे हैं आजू बाजू में बहुत सारे लोग भी खड़े हैं वह उनकी तस्वीर निकाल रहे हैं आजू-बाजू में बहुत सारे पेड़ पौधे भी है।

सामने बहोत सारे लड़कियाँ बैठी हुई है उनके सामने कागज है ऊ किसी के पास फेविकॉल है।

सामने बहुत सारे लोग खड़े है एक लड़के ने मास्क भी लगाया हुआ है वह नीचे की तरफ कुछ देख रहा है एक पुलिसवाला भी है वह भी नीचे देख रहा है उनके आजू बाजू मैं मशीन्स है।

आजूबाजू मे बहुत अच्छी सी लाइट भी लगाई गयी है सामने लोग भी खड़े है कुछ लोग बाते कर रहे है और कुछ लोग उस तरफ जा रहे है।

नीचे मिट्टी है वहा गेहु हा बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है आजू बाजू मैं बहुत सारे पेड़ पौधे भी है एक ट्रॅक्टर भी है।

उनके पास बहुत सारे हर है उन्होंने वो भगवान को चढ़ा दि हैं आजू-बाजू में बहुत सारा सामान रखा है एक दिया भी है।

और कही जा रहा है आजु-बाजू मे बहुत सारे पेड़ भी है आजु-बाजू मे बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए है।